ये पैलस की तस्वीर है।

आगे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं।

लोग भी खड़े हैं।

सेल्फी ले रहा है।

इस नर्सरी में काफी पौधे लगे हुए हैं।

काफी गमले हैं इन गमलो में --

कॉल में डॉक्टर पेशेंट --

पहनी हुई है। लड़कियों--

फोटो करवा रहा है।

ये काफी सारे--

कार्टूंन के ऊपर एक्वा लाइट लिखा--

गमलों में अलग अलग--